दीवार का रंग पीला है एवं छठ के ऊपर कई सारे पंखे लगे हुए हैं।

नीचे एक पेपर पड़ा हुआ है लीची के नीचे एक नीला डब्बा रखा हुआ है जिसका रंग नीला है।

दीवार पर कई बॉडी बिल्डर के पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टर में कुछ लिखा हुआ है सामने की ओर कई खिड़कियां है।

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग है जिसमें मल्टीप्ल शॉप्स हैं।

बड़ा सा फूल है जिसमें लाल फूल खुला हुआ है।

सामने पुआल का ढ़ेर रखा हुआ है कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह तस्वीर कोई रेस्तरां का है जिसमें कई सारे टेबल और कुर्सियां लगी हुई है।

दीवारों को बैलून की मदद से सजाया गया है छत के ऊपर कई सारे लाइटे लगे हुए हैं।

कई सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

यह किसी क्लासरूम का तस्वीर है जिसमें कई सारे बेंच और डेस्क लगे हुए हैं।

दीवार और छत का रंग सफेद है सामने की ओर एक बड़ा सा स्टेज है।

दीवार पर एक स्पीकर लटकाया हुआ है सामने की ओर दो एल ई डी है।

यह एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके ऊपर मल्टीप्ल पोस्टर लगाए हुए हैं एक पोस्टर में फिटजी लिखा हुआ है।

एक सड़क गुजरी हुई है जिस पे कई सारे गाड़ियां खड़ी है।

एक लकड़ी का सीढ़ी है और एक बांस का टटरा।

पत्थर के ऊपर कई सारे घास फूस हुए हैं।

छत के ऊपर एक बल्ब झूल रहा है।

यह किसी गार्डन का तस्वीर है गार्डन के अगल बगल में कई बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

तस्वीर में ईटो तथा पत्थर की मदद से बनाई हुई एक स्ट्रक्चर को दिखाया गया है जिसके अगल बगल कई झाड़ियां लगे हुए हैं।

नीचे बैठने के लिए कई सोफे हैं और नीचे एक सफेद गद्दा है उसके ऊपर लाल तकिया रखा हुआ है।

टेक योर बहुत सारी खुशियां लगी हुई है जिसमें सफेद कवर चढ़ा हुआ है।

दीवार पर कुछ फोटो टंगे हुए हैं चाहिए रखा हुआ है।